यह एक मस्जिद की तरह दिखाई दे रही है यहाँ पर ये लोग आकर नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए है।

यह एक सार्थक अकादेमी नाम की एक संस्था है यहां पे हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम विषय छात्रो को पहेली कक्षा से पाँचवी कक्षा तक--

यहाँ पर एक प्राचीन समय में किसी राजा महाराजा द्वारा एक तलाब बनवाया होगा यहाँ पर एक व्यक्ति--

डाक पोस्टमेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाई जाते हैं यह एक गाँव में स्थित है यह डाकघर दिखने में सुंदर प्रतीत होता है।

यह एक सिंधु भवन नामक घर है यह घर किराए पर दिया जाता है यहाँ पर अभी सौ डेढ़ सौ लोग रहते है जो कि किराए से--

इस घर को और आकर्षक बनाने के लिए इसके आसपास पेड़-पौधे आदि लगाए गए है यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है।